जिसमें से थोड़ा-थोड़ा धुआँ निकल रहा है।

देखने के लिए मिल रहीं है यहाँ कोई पूजा अर्चना।

मदद से घूम रहे है यह नाओ बहोत छोटे-छोटे है।

मजबूत समारक द्वार है यहाँ देखने बहुत दूर-दूर से लोग आते है।

यह दुकान एक औलोपेथिक दुकान है तथा यहाँ पर एक क्लिनिक भी है।

जो कि सारी गोकुल वासियों की हैं और वहाँ पर कृष्ण राधा कृष्ण की रानी --

कृष्ण की सारी गोपियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है यह बहुत ही सुन्दर दृश्य है।

यहाँ पर एक तिरंगा झंडा लगाया गया है तथा नीचे तिरंगे से रंगोली बनाई जा रही है।

यहाँ सूखे-सूखे काफी सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

जैसा की में देख पा रही हूँ यह एक बहौत ही मेहंगा सलून है।

यहाँ पे कुछ व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए मशीनो द्वारा व्यायाम कुश्ती करने आते हैं।

यहाँ पे दीवार के ऊपर छोटे-छोटे झाड़ी-वाड़ी जमे हुए हैं।

गुलाब चमेली आदि सभी फूल मिलते हैं।